यहाँ पे गरबा डांस हो रहा है यहाँ पे बहुत सारे लोग गरबा कर रे है।

लाइन मे एक ऑटो भी खड़ा है कुछ लोग बाते भी कर रहे है कुछ लोग पेट्रोल भरा रहे हैं और कुछ लोग इंतजार कर रहे अपना टर्न आने के लिए --

यहाँ पे योगा क्लासेज चल रही है यहाँ पे सात लड़कीयां योगा कर रही है यहाँ का वाल बहुत अच्छे तरह से डेकोरैट किया गया है यहाँ पे --

यह तस्वीर एक मंदिर की है यहाँ पर हमें भगवान की बहोत ही खूबसूरत बड़ी-सी प्रतिमा दिखाई दे रही हैं।